ये एक बड़े से यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑफिस है यहाँ पे--

यहां डार्थ रूम भी रखा हुआ है यहां पे अदमियां भी है यहां पे दरवाज़े भी है ओपन किए गए ब्लू कलर के दरवाज़े यहां पे राइट साइड मे बहोत सारे--

यह पे दीवार के ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे अंदर टेबल भी है और आजुबाजु छोटे छोटे झाडां भी है और यहाँ पे एक बच्ची भी है मास्क पेहनी हुयी यहाँ पर बैठने के लिए खुर्ची भी रखी गयी है।

और इन्हे खाने के लिए चारा डाला गया है और यहाँ पे मुँह पे रस्सी बांधी गयी है और ऊपर भी ह--

और यहाँ पे ग्लास भी चढ़ा रहे हैं यहाँ बैठने के लिए चेयर भी हैं फन भी हैं और उप्पर एसी या भी ऊपर फायर एण्ड सैफटी का ये भी रखा गया है और यहाँ पे--

यहाँ पे बडीसी बिल्डिंगा काम चालू हैं और यहाँ आजू बाजू भी मारा गया हैं और यहाँ पे बहोत सारे मटके बनाए गए हैं और रखे गए है जमा के--

यहाँ पे ये स्कूल हैं और यहाँ पे बहोत सारे बच्चे बच्चियाँ बैठी हुए हें और यहाँ पे बाजू बड़े बड़े तकते हैं लाइट हैं फैना चालू हें यहाँ पे सर भी हैं।

इतनी बड़ी अ जाली मरी गयी है और उसके ऊपर ठेहेरके काम किया जा रहा है और यहाँ जो छोटे बिल्डिंग भी है यहाँ पे--

और ब्लैक के पत्थरे भी पड़े हुए है और निचे कलर भी किया हुआ है और इसके ऊपर गिलास की शीशी भी डाली गयी है और ऊपर आसमान भी दिख रहा है--

ये एक बजाज शोरूम में यहां पे मोटरसाइकल मिलते हैं यहां पे ऊपर जाने के लिए--

ये एक कंप्यूटर डेस्कटॉप लैपटॉप पी_ सी सेल्स एंड सर्विसेस की दुकान है यहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर भी मिलते है और यहाँ पर बनाया भी जाता है यहाँ पे--

स्कैनिंग सेंटर हैं और यहा पे लेफ्ट साइड मैं भी एक फार्मस --

कॉन्सट्रक्षण का काम चालू है और यही दीवार से बनाया जा रहे है और यहा बहोत सारे ब्याहे रॉयल एण्ड --

ये एक ओपन जिम है यहाँ पे बहुतसारे मशीन्स रखे हुए है फैन लगाया गया है और बाजु में भी--

और आजूबाजू बहोत बड़े बड़े पेढ भी है और लेफ्ट साइड मैं हरी हरी घास भी उठी हुए है और बहोत सारे लोग भी है यह पे और यहां पे झूले भी रखे हुए हे और रेड कलर का फैन भी हैं।

ये एक बस स्टैन्ड हैं और वहा पे एयरपोर्ट हें और यहाँ पे आजू बाजू बड़े बड़े बिल्डिंग हैं।

बड़े बड़े लह के लाइट के खंबे भी हे यहाँ पे हेलमेट पहना हुआ आदमी आ रहा है और आजूबाजू गाड़ी या भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी मारा गया--

और राईट साईड में एक बॉक्स भी रखा हुआ है और यहाँ पे बोहोत लम्बी भीड़ लगी हुयी है और बाजू एक रेड कलर की बस खड़ी हुयी है रोड के ऊपर--

ये निचे टाईल्स बिछाई गए और यहाँ पर ऊपर स्टेप्स चढ़ के पयपा पकड़के चढ़ा जा रहा है यहाँ पे--

ऊपर बोहोत सारे शटर डाले गए है दुकाने है यहाँ पे गाड़ी भी है और यहाँ अंदर अंडरग्राउंड भी एक रूम है और यहाँ पे शटर खुला हुआ है--

पर अब बिना कलर की टंगी हुए दीवार खिची गयी हैं और यहाँ पाइप भी हैं स्टेप्स बनाए गए हैं झाड़ू भी रखी हुए हैं।

और बाजू पौधे का पॉट भी रखा गया हैं और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया गया हैं बैंक के बारेमैं लिखी--

ग्लासेस खींचे गए और यहाँ पे चार्जेर्स छोटे बड़े सभी रखे हुए है यहाँ पे ग्रीन कलर का और यहाँ पे बड़ा सा छोटा फैन और यहाँ पे--

वो ड्राइवर भी है पकड़ भी है और ग्रीस का डब्बा भी है यहां पे ऑयल का डब्बा भी है यहां पे ऑयल निकला हुआ दिए और ग्रीस मारने के लिए ग्रीस गन भी है यहां पे।

रिंग पाना भी है सेट पाना सभी पाने है यहाँ पे बाहार मिट्टी भी दिख रही है और इसकी खिड़की खुली हुयी है।

यहाँ पे एक बड़ी सी नदी है यार उसका पानी ब्राउन कलर का दिख रहा है ऊपर आसमान भी दिख रहा है ब्लू कलर का--

और उसके बाजुमें पानी की टाकी है उसपार लेफ्ट साईड में और यहाँ पे बड़े बड़े पत्तरे भी है घास भी उगी हुयी है आजुबाजु--

यहाँ पे ऊपर आसमान दिख रहा है उसके यहाँ पे बडासा समुंदर भी है किनारे पे और यहाँ पे पार्क में मिट्टी भी पड़ी हुयी है यहाँ--

बैठे हुए बहोत सारे लोग हैं पीछे कारे हैं और यहां पे सामने रोड भी है और यहां पे बहोत सारे टाकिया भी है।

और यहाँ पे बहुतसारा झाड़ा भी है और समंदर का पानी सफ़ेद है उदर ब्लू है और यहाँ पे बहुतसारी पब्लिक घूम रही है--

भी है और ऊपर आसमान भी दिख रहा है ब्ल्यू कलर का और यहां पे रस्ते पे कोई नहीं है और यहां पे सीधा रास्ता है और वहा से--

तो लोग आ रहे हैं आजू बाजू कट्टे बनाए गए हैं बैठने के लिए लोगों के लिए सर्विस की ग--

ये एक दुकान है और इसमें बॉल्स है घडिया है बहुत सारे सामान पड़े हुए है खेलने के बच्चे--

सामान भी है टेडी बीआर भी है गुड्डे फेविकोल के डब्बे भी है यहाँ पे दिल शेप हार्ट शेप बनाये गए है यहाँ पे सेंट की बोतल है और --

ये एक यहाँ पे फ्रीज भी है अंदर जूस की बोटल भी है यहाँ पे बैठने के लिए--

है यहाँ पे स्पिनर्स भी है यहाँ पे फोन पे का गिलास भी लगाया गया है यहाँ पे कांच का शीट है राइट साईड में वॉल भी खींची हुयी है यहाँ पे ऊंची ऊँची वॉल --

यहाँ पे दुकान बंद है और अंदर बोहोत सारा शेल्फ है बोहोत बोहोत सारा सामान पड़ा हुआ है--

ये एक वॉटर फॉल्स है यहाँ पे और हरा कलर का पानी दिख रहा है और आजुबाजु--

छतरी भी दिख रहे है ऊपर पहाड़ भी है छोटे बड़े छतरिया और बच्चे इसमें --

मिल्क बार्बी है यहाँ पे चीज़ और चोको अमूल चॉकलेट मिलते है केक मिलता है दूध मिलता है यहाँ पे सायकल भी है।

और यहां पे बहुत सारे लाइटिंग्स भी और टीन शेड भी मारा गया यहां पे बहोत सारे लाइटिंग्स है बीच हाईवे रोड पे बहोत सारे गाड़ियां भी आ रहे हैं और उनके लाइट्स भी चमक रहे हैं।

ये एक क्रिकेट प्रा प्रैक्टिस सेक्शन है और यहाँ पे जाली मरी गयी है यहाँ पे बहार स्टेप्स भी लगाए गए है यहाँ पे लड़की है हेलमेट बैट और पैड --

और उसके सामने आने जाने के लिए अ रा रस्ता भी बनाया गया और यहाँ पे राइट साईड लेफ्ट साईड में खंबे है लाइट के गोल गोल सर्कल्स के अंदर लाइट गयी लगायी गयी है।

ये एक फ्लावर्स के पॉट है यहाँ रेती के अंदर पॉट्स रखे हुए है और यहाँ पर पेंट कर रहा है येल्लो कलर के झाड़ो को ओ--

लगे हुए है और बाजुमें टंगे पड़े हुए है और यहाँ पे बड़े बड़े खंबे है लाइट के--

और यहाँ पे लटक रहे है और यहाँ पे झाड़ भी है बड़े बड़े ऊपर आसमान भी दिख रहा है लाइट के खम्बे भी है.

कर्रेंट के वायर भी लगाए गए यहाँ पे और यहाँ पे बहुतसारा सामान भी आजुबाजु बड़े बड़े झाड़ भी दिख रहे है।

ये एक भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड है यहाँ पे बाहर गाड़िया भी है यहाँ पे एक आदमी नंगा खड़ा हुआ है यहाँ पे--

पड़ा हुआ है यहाँ पे निचे मट्टी है यहाँ पे ऑफिस खुली हुयी है यह पे ऊपर लाइट का फोकस भी है ऊपर यहाँ पे --

की टाकी भी दिख रहा है जो की व्हाइट कलर की है और यहाँ पे पिले कलर का बोर्ड है और आसमान दिख रहा है.

सभी फ़ोन्स रखे हुए है यहाँ पे जी_ पे फ़ोन पे भी रखा हुआ है यहाँ पे अलग अलग शेल्फ में उसके कवर्स भी है और गोरिल्ला ग्लासेस भी लगे हुए है और साधा ग्लासेस भी रखे हुए है.

ये एक चर्च है और यहाँ पे चर्च को सजाया गया है और उसको बैलून्स से सजाया गया है ब्लू व्हाइट कलर के बैलून्स है।

और यहां पर बहुत सारी पब्लिक भी जमा किया और यहां पर बहुत सारी लाइटिंग भी और चर्च के सिंबल को लाइट भी किया है। रेड कलर का डिजाइन --

यहाँ पे बाहर गाड़िया है टू व्हीलर और यहाँ पे--

बोर्ड लगा हुआ है की ब्रांच है यहाँ पे.--

आसुतोष भंडार इनविटेशन कार्ड है यहाँ पे स्कूल कॉलेज ऑफिस एक स्टेशनरी है यहाँ पे झेरोक्स सेंटर है यहाँ पे--

ऊपर आसमान है लाइट के खम्बे है और दिख रहे है और बड़े बड़े लाइट के फोकसेस भी है यहाँ पे बोहोत सारा कॉलेज का सामान बुक स्टॉल भी है यहाँ पे झेरोक्स --

और यहाँ पे हरी हरी घास उगी हुयी है और मट्टी भी यहाँ पे एक कुत्ता भी घूम रहा है वह पे लोग भी आ रहे है और यहाँ पे --

और उसके काली टाकी भी दिख रही और उसके बाजुमें पेड़ है यह पे सीधा बडासा एक--

कार भी है बड़े बड़े झाड़ भी है और यहाँ पे लाइट के खम्बे भी लगाए गए है यहाँ पे मारा गया है।

यहाँ पे बाहर एक बडीसी इचल गाड़ी कड़ी हुयी है और यहाँ पे बाहर बहुत सारे टू व्हीलर्स है बहा बोहोत सारे लोग ह--.

और यहाँ पे स्मार्ट शोरूम है और उसको सजाया गया है फूल्स लगाए गए है और यहाँ पे --

ये एक खिलोने की शॉप है यहाँ हार लगाया गया है और यहाँ पे भी मिलते है--

और यहाँ पे बहुतसारे मुर्तिया भी है शेल्फ में और यहाँ टेडी बीअर भी रखा हुआ है--

और यहाँ पे पेन्ना भी है रब्बरा भी है बोहोत सारा सामान--